एक वाइट कलर का चर्च है जिसमें रेड कलर का क्रिसमस क्रॉस दिया हुआ है।

ये एक पुराना हवेली है। एक लड़का व्हाइट कलर का जमा पहन के और एक फुल पैंट पहन के इस हवेली का आनंद ले --

ये एक ऑल्टो गाड़ी है सिल्वर कलर का जिसका एक्सीडेंट हुआ है।

और लाइटिंग भी है। ब्लू कलर का फर्श और ऊपर व्हाइट कलर पे पेंट किया हुआ है।